यहां चार छोटे बच्चे दिख रहे हैं।

तीसरे बच्चे के हाथ में छोटा फ्लैग है।

कुछ लोग टहल रहे हैं इधर उधर और एक घर दिख रहा है।

यहा पर एक अंकल पैदल जा रहे हैं।

और कुछ पोस्टर लगे हुए है दीवाल में।

और कुछ चेयर ऐसे ही पड़ी हुई है।

कुछ घूम रहे हैं और बहुत सारे पेड़ लगे हैं हरे भरे।

दो चेयर रखी हुई है और शुद्ध पानी पीने के लिए रखा है।

कुछ लड़के घूमने के लिए जा रहे हैं।

दो लड़कों ने बैग टांगा हुआ है और आगे के तीन ऐसे ही जा रहे हैं।

यहां पर कोई आदमी या औरत नहीं दिखाई दे रहे हैं।

यहां लोग पूजा करने आए हैं।

एक साइड आंटी बैठी है एक साइड अंकल बैठे हैं।

बहोत दूर पर एक और अंकल बैठे हैं।

कुछ अंकल आंटी जा रहे हैं।

बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है।

और बहुत सारी खाने की चीज--

नदी के पास एक साइकल खड़ी हुई है।

यह एक बहोत बड़ी नदी है।

वाइट कलर का और एक साइड पेड़ लगा है टेंट के पास।

और ऑरेंज कलर की दीवार पर पांच फोटो फ्रेम्स लगी हुई हैं।

यहां एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई है।

इधर साइड में तीन लड़के बैठे हुए फोन चला रहे हैं।

और एक छोटा बच्चा भी जा रहा है।